ये लग रहा है जैसे की आप देख सकते हैं ये आदमी--

और स्वच्छ है जहां पे हम अराम की सांस ले सकते--

जैसे कि आप लोग लोग यहां देख सकते हैं यहां पे एक टी_वी है और यहां पे एक शानदार ही कमरा है।

बहुत ही शैक्षिक और सुंदर और स--

ठीक हो जाते है यहां पे स्किन डॉक्टर्स बैठते है।

इससे नाइन थोड़ी गड़बड़ दिखिए जाड़िये--